बस स्टैंड है। यह बस स्टैंड बहुत ही बड़ा एण्ड सुंदर है।

की सजावट बहुत ही अच्छे हैं यहाँ बहुत ही अच्छी महंगी-महंगी लाइट्स लगी हुई हैं ।

यहाँ पर लोगों को बहुत ही कम दामों में बाल काटा जाता है एवम दाढ़ी शेव किया जाता है । यहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं ।

ड्राइंग ड्राइंग हमारे बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्प चीज है।

में बहुत तेज हवा बहुत ही अच्छी हवा मिलते हैं जो कि प्रकृति के लिए एक नेचुरल चीज है।

ताकि हमारी हमारी सब्जी का स्वाद भी बढ़ाता है।